कुछ फ्लावर शो हो रहा हैस्टेज पे कुछ झारिया लगाये गए हैं गुलदस्ते लगाये गए हैं हार्ट लगाये गए है ट्रीज यहां पे हमे शो हो रहे है।

के लोग हमें या शो हो रहे है बहुत से बच्चे कुछ एक सीट पे त्रिपल बैठे है कोई सिंगल बैठे है और बैग से पेन हमे या पे नोटबुकस यहाँ पे शो हो रही है।

यहाँ पे हमें एक बैंक की पिक दी गई है जहाँ पे ऊपर बैंक का नाम लिखा गया है नीचे भी कुछ अ उसका पोस्टर लगा है एक लड़की का पोस्टर लगाया गया है।

और फूटबॉल्स नजर आ रहा है बेडमिन्टन रैकेट यहाँ पर शो हो रहे है।

गलीरय हमें यहाँ पे शो हो रही है जो नेट के उसपे कवर्ड है कुछ लोग नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं बेंच हमें यहाँ पे शो हो रही है गेट्स यहाँ पे शो हो रहा है